डॉक्टर अमित कुमार मोदी के नाम से दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे लाइटें डी.जे. स --

की मोटर साइकिल लगी हुई है और सामने --

ब्लू कलर का गेट है नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ नज़र में आ रहा है।

और यहाँ पे चौकी है और चौकी पे बहोत --

क्यों ये डिब्बे रखे हुए हैं और --

ड्राम भी रखे हुए हैं और यहाँ पे सामने --

पी रहें हैं और औरत भी है --

जे पेड़ की परछायी पानी में हमें नजर में --

तसवीर में हमे मोहन --

यहाँ की योगा का नाम कृति --

जहाँ की यह तीन कलर की ड्रेस रखी हुई है।

ब्लू कलर की एक ऑरेंज कलर की --

यूनिक ड्रेस रखा हुआ है जहाँ के बटन ल --

रोड दिखाई दे रही है जहां पे --

टैप अ ऊ रेड कलर का लगा हुआ है।

एक आदमी आग लगाते हुए नज --

और उस पंजो से पकड़े हुए छड़ है।